और ये व्यक्ति खड़ा हुआ स्टेज प कुछ बोल रहा है।

हमें यह एक दुकान रही है।

यहां पर प्लेट में खाना रखा हुआ है किसी का हाथ दिख रहा है जो रिंग पहने हुए हैं।

यहां पर चार झोपड़ियां नजर आ रही हैं जो की अलग अलग कलर --

हमें यहां पर हरे हरे घास नजर आ रहे हैं।

यहां पर कुछ लकड़िया नीचे गिरी हुई है--

हमें एक झील नजर आ रही है जिसमें पानी नीचे की ओर आ रहा है।

ऊपर बहुत सारे पहाड़ है जिन पर बहुत सारे मनुष्य भी नजर आ रहे हैं।

हमें दो व्यक्ति दिख रहे हैं हमें कड़ाही पर टिकिया भी नजर आ रही है।

वहां पर एक सड़क दिखाई दे रही है जिसपे पुराने जमाने की गाड़ी खड़ी हुई है।

यहां की डेकोरेश येलो कलर का यूज ज्यादा हुआ है और बैंगनी कलर भी नजर आ रहा है।